कुरकुरे कोल्डड्रिंक आदि -आदि मिलते हैं।

इस समुद्र का दृश्य बहुत ही बढ़िया है|

यह एक मैरिज हॉल है और यहाँ पर शादियाँ होती हैं। इसके बाहर में गीता साड़ी सेंटर है और यह दुकान बहोत ही --

इसके इधर बुलेट है तो उधर कार है। इसके बाहर में पेड़ पौधे हैं। इसके अगल बगल में इसके बगल में थोडा देखा जा रहा की पेड़ सूख गया है।